ऊपर में डिजिटल तराजू रखा है।

सबसे ऊपर फ्लोर में सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हैं।

यह एक दुकान का फो काउंटर है।

गंगा नदी के कि किनारे बना हुआ है।

यह एक जीम है जहां --

भी कुछ लोग जिम कर रहे हैं।

ऊपर आसमान नीले हैं साफ है।

बांस के बने हुए कलश है पिंजरे हैं।

उनके बगल में एक लोग और बैठकर --

एल_ई_डी लाइट से बनी हुई गेट बने हैं।

जहां पर पीले रंग के --

जहाँ से बाइक सवार आ रहे है और जा रहे है।

पीछे कुछ महिलाएं और बच्चे भी --

दोनों साइड कुर्सियां लगी हुई है।

दूल्हे को बैठने के लिए कुर्सी भी रखी हुई है।

और कई प्रकार के भी डांस कराए जाते हैं।

तीन लोग सर पर मुरेठा या पगड़ी बांधे हुए हैं।

एक झरना है जहां पर कुछ लोग --

लाल रंग के टी-शर्ट में बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं।

पगडंडी रास्ता दिखाई दे रहे हैं।

छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

पीछे दुकांस में लाइट जली हुई है।

नीचे मार्बल लगा हुआ है।

एक आदमी फुटबॉल लेकरखड़े हैं।

और बुल्ड क्राफ्ट का भी बोर्ड लगा हुआ है बगल के दुकान में--

लाल रंग के गुलाब का गुलदस्ता है।

हाथ में लेने वाला बॉल्स लेकर उठाए हैं।

मुट्ठी बंद करके हाथों पर किए हैं।

पीछे शीशा लगा हुआ है।

समान लदा हुआ है जिसमें से उतारा जा रहा है।

पांच लड़के एवं एक लड़कियां बीना लेकर संगीत का रियाज कर रहे हैं।

जहां से दो लोग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

एक जिम है जहां पर --

एक सब्जी का दुकान है जहाँ पर --

सब्जी देने वाले से मोल-भाव कर रहे है।

फोटो भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

जहाँ पर जिम करने के बहुत सारे --

क्रिश्चियन धर्म के शादी का --

इसमें सोफा और तीन कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

कुछ लोग बैठकर अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं।

चार प्लेट्स और एक बॉइल रखा हुआ है।

गैरेज दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटी --

भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा --

पीछे आसमान साफ उजला दिखाई दे रहा है।

शोरूम में ए_सी भी लगे हुए हैं ।

बहुत अच्छे तरह से लैपटॉप को सजा कर रखा गया है।

जहां पर काउंटर बने हुए हैं।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बीच बाजार का रोड है।

दुर्गा देवी मंदिर भी है।

एक नव-निर्मित घर दिखाई दे रहा है।

सीमेंट के ईंटे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक हॉस्पिटल है जहाँ पर --

सामने में एक मंदिर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

कुर्सियों पर बैठे हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

दुकान में कस्टमर हरा टी-शर्ट में --

पीछे एक बहुत बड़ा सा गेट है।

जिसमें बहुत सारे लोग खेल रहे हैं।

इस ममैदान के चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं।

खिड़कियों पर पर्दे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

एंड रेस्टोरेंट बैकंट हॉल है।

और बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।